ये तस्वीर एक दुकान की है जिसमे ड्राइ क्लीनिंग का कार्य किया जाता है ।

इस दुकान के ठीक बगल मे एक काफी उच्चाई वाला पेड़ है ।

इस तस्वीर में एक ऋषि की मूरत को देखा जा सकता है जो कि एक मार्बल के पट्टे पे बैठे हुए है।

ये तस्वीर एक बेकरी की है जहाँ पे चींज़े बेक की जाती हैं इस तस्वीर में काफी अँधेरा हैं काफी काला रंग हैं।

जिसमें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

भोजन चूल्हे पे चढ़ा हुआ है।